और एक टैम्पू जो की रोड ब्रीज से पार होकर जा रही है।

नाम है स्वराज और यहाँ पे एक फोर व्हीलर भी है और एक बाइक भी उधर से निकल के आ रही है।

तो यह जिम सेंटर का दृश्य--

खड़ा और काफी सारी और एक औरत--

तो ये दृश्य देखने से एक मन्दिर का लग रहा है जहाँ पे दुर्गा माँ की फोटो लगी हुई है और--

झोला भी नज़र आ रहा--

यह जहाँ पे एक लड़का साईकिल मैं बैठा हुआ मास्क लगा के--

काफी सारे यहाँ पे लड़की जो है।

खड़े है और दो लड़की के हाथ में कुल्हाड़ी है और वो--

एक फोर व्हीलर भी दिखाई दे रहा है।

और एक लोग छत के ऊपर भी--

आदमी खड़ा है काफी सारी बाइके भी यहाँ पे है।

और काफी अच्छी तरह से इस घर को बनाया गया है।

कृष्ण भगवान और राधा जी के हाथ में एक बाँसुरी भी रखी गयी--

लाइटे भी दिखाई दे रही--